ब्राउन रंग की टाइलें दिख रही है कुछ ब्राउन रंग के बॉक्सेस दिख रहे है और पीछे मे एक लाइट दिख रही है।

कुछ पेंटिंग्स लगी हुई दीवारों में हमें दिखाई दे रही है साथ में कुछ व्हाइट कलर के बलफ भी हमें--

इस पिक्चर में हमें यहाँ पर बेंच दिखाई दे रहे जो की व्हाइट कलर के बेंच हैं साथ में ही पीछे रेड कलर की दीवार दिखाई दे रही है।

जिसके साथ ब्लू कलर शर्ट के साथ आदमी खड़ा है।

और पीछे हमें कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही है पत्थर लगी हुई डिजाइन और सामने--

जोकि इसमें दो व्यक्ति नजर आ रहें ऊपर की साइड इसमें लैंप लगे हुए हैं और गेट पर हमें कांच का दिख रहा है।

साथ में ही पत्थरों से बनी हुई एक दीवार भी दिख रही है। पीछे बहोत सुंदर सा आसमान दिख रहा है।

पेड़ हमें ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे है।